ये एक सरस्वती माँ की मूर्ति है।

इस बैंक में बहुत सारे लोग अपने-अपने काम के लिए आते हैं।

एक जिम क्लास है | इस जिम क्लास में बहुत सारे लोग कसरत करने के लिए आते हैं।

एक ट्रेन की पटरी है | इस पटरी के बगल में एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारे मशीने रखी गई है जिस पे लोग कसरत करते हैं।

इन मछलियों को खरीदने के लिए --

और ये सभी मिल बच्चे मिलकर कुछ बना रहे हैं यहाँ एक शिक्षिका बैठी हुई हैं।

ये शिक्षिका इन बच्चों को सीखा रही है इस स्कूल में बहुत सारे बच्चे --

इस जगह पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए लोग आते-जाते रहते हैं और यह जगह देखने में बहुत ही सुन्दर लग रही है।

जगह पर दुर्गा माँ की मूर्ति बनायी गयी हैऔर यहाँ पर और भी बहुत सारी मुर्तिया बनी हुई है।

इस जगह पर एक घर बनाया जा रहा है।

इसके बाहर में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं और यहाँ बगल में बहुत सारे घर बने हुए हैं।

और ये जगह पर एक बहुत बड़ा खाली जगह है | इस जगह के चारो ओर बहुत सारे घर बने हुए हैं।

एक बहुत बड़ा कॉलेज है।